यहाँ एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट हे पीछे रेड हे।

यहाँ कुछ लकड़ियां खड़ी हुई है वहाँ पे मोर बैठा हुआ है उस पे कुछ कपड़े है इसमें --

यलो कलर की पट्टी दिखाई दे रही है बैंक में एक जाली का गेट लगा हुआ हैजिसका व्हाइट कलर है एक साइड ए_टी_एम बना हुआ है जिसमें कांच लगे हुए है।

सफेद एवं केसरिया रंग है उसका खम्भा व्हाइट कलर का है पीछे कुछ घर बने हुए है।

यहाँ पर एक अअअ इमारत दिखाई दे रही है उसके लिए रोड बना हुआ है रोड का कलर यलो और एवं पिक एवं ग्रीन दिखाई दे उस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके आस--

-- हुए ऊपर पंखे चल हैं कुछ लाइटस लगे हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।